और अगल बगल सिंदरिया लटकी दिखाई दे रही--

और एक बड़ी सी खिड़की भी दिखाई दे रही है।

काउंटर पर कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।

फोन लेके सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं।

पीछे की तरफ काली तिरपाल भी दिखाई दे रही है।

इसका बोर्ड ऊपर रॉयल कैफे नाम से है।

लाइटें जलती दिखाई दे रही हैं।

ऊपर आसमान में सफेद बादल दिखाई दे रहे हैं।

जमीन पर बहुत सारी घास उगी हुई है।

गाजर लहसुन गोभी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बाहर की तरफ फूलों से सजावट हुई दिखाई दे रही है।

जिसके चारों तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं।

सामने बहुत बड़ी सी शॉप है।

अलमारियों पर सामान रखा दिखाई दे रहा है।

जिम में पीले काले कलर के बहुत सारे ग़ुबाड़े हैं।

थर्माकोल का डब्बा और उस पर प्लास्टिक के डब्बे छोटे छोटे रखे हैं।

ऊपर की तरफ बैनर लाइटें लटकी दिखाई दे रही हैं।

बाहर चार गमले रखे दिख रहे हैं।

और बोहोत सारे खंभे और लाइटें भी लगी दिखाई दे रही हैं।

साइड में हरे कलर के बड़े बड़े पेड़ भी हैं।

आसपास बहुत सारे पेड़ भी है।

जिसमें लिफ्ट लगी दिखाई दे रही है।

गुड़िया भी रखी दिखाई दे रही है।

काली पॉलिथीन में छोटे छोटे पेड़ उगे हैं।

सामने बहोत सारी किराने की दुकानें हैं।

जिसकी पटरियां बनीं दिखाई दे रही हैं।